और अंधेरा हो रहा है ग्रीन सफेदी भी है और मटियारी सी भी है।

आदमी कोई नही है यहां पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे है।

यहां आदमियों की ड्रेस मिलती है।

ला लाल कार्पिन बिछ रहा है और--

यहां पेड़ पौधे लग रहे--

और यहां दरवाजा भी सजा रखा है कोई शादी सी लग रही है सब इकट्ठे हो रहे हैं।

जैसे वाटिका नजर आती हो आदमी भी खड़े है औरते भी खड़ी है दरवाजा भी लग रहा है।

ऐसे लगता है जैसे वाटिका हो--

और पेड़ पौधे हैं कितने बड़े--

और दीवार नजर आ रहीं और गुलाबी--